यह एक बच्चों के खेलने का पार्क है। जहां पर बच्चे अक्सर खेलने के लिए जाते हैं। यहाँ पर काफी सारे झूले भी लगे हैं। और यह काफी बड़ा भी है। यहाँ चढ़ाई के लिए भी झूले हैं।

यह एक बुक स्टोर है। हम लोग अक्सर बुक स्टोरों पे बुक खरीदने के लिए जाते हैं और बुक खरीदते हैं हमे जिस बुक की आवश्कता होती है हम वही बुक खरीदते हैं। जिससे हमारी नॉलेज काफी अच्छी होती है।